ओ देखो कोट ही कोट पड़या है सी के मायने तो कोट ही आसी ओ बारे --

और ओ शायद गंगा नदी पर है के यमुना में है ठा कोनी लेकिन है नदी पर घाट सा बेठते ही अजीब सो है मंदिर बढ़िया है मंदिर आनो है क़द।

टीवी दिख रहिया है ए ओ बढ़ो सारो हेर एक बी पीछे हेर यहां हाथ में कपड़ो सो क ले मेल्यो हेर इ ऊपर लिख्योड़ो है कई ड्राई क्लीनर्स जेन्टल ।

ओ तो कृष्ण जी की मूर्ति है अ जानिए रख मेली है कृष्ण जी है काई बोल्या बे ही हूला।